यहां पर मोदकती रखी हुई है मंदिर बना हुआ है।

सारी रैक बनी हुई दिख रही हैं।

रखी हुई दिख रही है।

लोगों ने कॉफी पीते हुए तथा बातचीत करते हुए दिख रहे हैं और दो और एक आदमी लैपटॉप चलता हुआ दिख रहा है।

गुलदस्ते दिख रहे हैं कंप्यूटर मशीन रखे हुए दिख रही है।

आदमी आते हुए दिख रहे हैं और जाते हुए दिख रहे हैं।

यहां पर ग्रीन और व्हाइट लाइट जलते हुए दिख रही है।

पर एक आदमी खड़ा हुआ है और यहां पर तीन आदमी बैठे हुए दिख रहे हैं।

एक एक आदमी चाय पीता हुआ दिख रहा है बिस्किट रखे हुए दिख रहे हैं।

लाइट जलते हुए दिख रही है और यहां पर डिजाइन बनी हुई दिख रही है।

जेड इन न कागज का सब बनाया हुआ रखा है एक डब्बे बनाए हुए रखे हुए हैं।

बहुत सारे मकान दिख रहे हैं और भी लाइटें जलती हुई दिख रही हैं।

और भी कई सारी सौंपे दिख रही हैं गाड़ियां खड़ी हुई--

है भैस पड़ी हुई है।

एक आदमी पढ़ रहा है और दो आदमी--

है और यहां पर लैपटॉप रखा हुआ है और टेंट लगी हुई है।

गमले रखे हुए हैं और पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

ऊपर ईंटे खुदे पड़े हुए है और यहां पर स्कूटी खड़ी हुई है।

एक लॉन है यहां पर ब्लू और रेड परदे का गेट लगाया गया है।

यहां पर रेड मेट बिछी हुई है और गुलदस्ते लगाए गए हैं।

आस पास पेड़ पौधे दिख रहे हैं एक आदमी चेयर्स पे बैठा हुआ दिख रहा है।

हमें यहां पहाड़ पहाड़ दिख रहे हैं।

यहाँ पर आसपास लकड़ी दिख रही है।

यहां पर पेड़ पौधे दिख रही है और यहां पर एक लड़की खेलते हुए दिख रही है।

पेड़ पौधे लगे हुए हैं और बहुत हरियाली दिख रही है।

हुई है और मुफ्त वैक्सीन का बोर्ड लगा हुआ है।

बहोत कलरफुल कपड़े रखे हुए दिख रहे हैं साड़ियां रखी हुई दिख रही है।

यहां पे दो आदमी कार बनाते हुए दिख रहे हैं।

यहां पर एक कार कार खुली हुई दिख रही है।

यहां पर नी नी ब्लू कलर का इलमारी रखी हुई दिख रही है। लाइट जलती हुई दिख रही है।

ऊपर बहुत सारी घंटियां लगी हुई है।

पर झालर लगी हुई है।

ऊपर गेट लगा हुआ है और टाइल्स लगी हुई हैं।

नाव के ऊपर अ-अ सेहरा तना हुआ है। दिख --

यह गुलदस्ते लगे हुए दिख रहे हैं और दो गार्ड बैठे हुए दिख रहे हैं कुर्सी पे।

नारियल के पेड़ दिख रहे हैं।